उसका रंग लाल और काला है और उसके पीछे एक सफ़ेद रंग की खिड़की दिखाई दे रही है।

उसके चारो तरफ घना जंगल दिखाई दे रहा है और सामने एक बडा सा पहाड़ दिखाई दे रा है।

मंदिर के ऊपर एक केसरी रंग का ध्वज है और उसके पास ही एक खम्बा है।

और एक गेट दिखाई दे रहा है उसका रंग लाल है उसके अंदर एक सफ़ेद रंग की कार दिखाई दे रही है।

मै यहाँ देख पा रही हूँ एक बडा सा रस्ता दिख रहा हैउसके बाजू ये लाल रंग के फूल लगाए हुवे।

मै यहाँ देख पा रही हूँ सामने कुछ दुकान दिखाई दे रहे हैं और एक सामने बडा सा रोड है उसके ऊपर तीन --

और दूर से पहाड़ दिखाई दे रहे है एक पहाड़ का रंग काला और दूसरे का हरा।

पत्ते का रंग हरा-हरा है और उसमे कुछ प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं उनका रंग सफ़ेद केसरी गुलाबी --

रस्ते में बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और एक कार दिखाई दे रहा है उसका रंग सफ़ेद है और एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

एक ने हरे रंग की शर्ट और केसरी रंग की पैंट पहना हुआ है।

दूसरे ने नीले रंग का शर्ट नीले रंग का जीन्स पहना हुआ है सर पर टॉवेल बंधा हुआ है।

में यहाँ देख पा रही हुँ एक बड़ा सा गेट है गेट का रंग काला है और एक उपर बड़ा सा बोर्ड लगाए हुए है।

और अंदर एक पाठशाला दिखाई दे रही है उसका रंग सफ़ेद है और आसपास कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पहाड़ के ऊपर बहोत सारे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सभी सफ़ेद रंग का हैं और एक काला रंग का है।

उसका रंग सफ़ेद है उसके ऊपर एक बड़ा सा टावर जैसा दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफ़ेद और काला है।

कार के सामने एक स्टिकर लगा हुआ है और कार के नंबर प्लेट --